ये शॉपिंग मॉल है ये शॉपिंग मॉल मे लोग हम सब भी तो कई बार गए हुए है शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारे सभी लोग जाते है जो शॉपिंग करते है शॉपिंग मॉल में जाके कपड़े खरीदते है।

ये बाजार है सड़क है ये मेन रोड है जहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग भी है और बहुत सारे गाड़ी भी है जो जाम मे लगा हुआ है और बहुत ही बड़े-बड़े पेड़-पौधे है और गाड़ी बस भी हैबहुत सारे पिक-अप भी है जो जाम में लगा हुआ है और बहुत सारे है और बिजली के खंबे भी है और बिजली के तार भी है जो --

ये सारे डॉक्टर लोग है जो हॉस्पिटल का ये फोटो है और सारे लोग डॉक्टर हैं। जो लोगों का इलाज करते है और ध्यान पूर्वक करते है। ये भगवान का दूसरा रूप है इन्हे सभी लोग कहते है डॉक्टर जो होते हैं।

जो बोहोत ही अच्छा ए.टी.एम. है और हर एक जगह ये ए.टी.एम. मिलता है हमें और जब भी जो कई जरुरत पड़ता है इस ए.टी.एम. से पैसा लोग विथ्ड्रॉअल करते हैविथ्ड्रॉअल करके निकाल लेते --